यह एक मंदिर है जो रोड के बगल में है। यहाँ पे बहोत सारे ऑटो सब है लाइन का तार सब भी ऊपर से गया हुआ हैं। ये मंदिर काफी बड़ा है। जिस पे ॐ नमः शिवाय लिखा हुआ हैं।